दिखाई दे रहा है पानी बहुत झोके से आ --

की ऊपर के साइड में एक कप में नेस्ले कप का एक कॉफ़ी है।

और सीढ़ी है कई और उसके बगल में भी --

काफी और छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है एक दो थोड़े बड़े भी पेड़ है।

और लाइट भी जल रहा है यहाँ पे। रेट पिंक कलर का पर्दे को मोड़ के उसके पास लाइट लगा हुआ है।

और उसके बगल मे ढेर सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

और पार्लर में बैठी है। समने कुछ समान भी दिखाई दे रहा है।

और उसमे नई दिख रही एकदम --

दोनों साइड से उपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है।

वायर भी है।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं क्यूंकी उस स्कूल मे प्रैअर हो रहा है।

सामने थोड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

ढेर ढेर सारे जिराफ है ।

है यहाँ छोटे-छोटे घास है।